ये देख कर हम ये कह सकते है की यह एक स्कूल है जहा पर बच्चों का फंगक्शन चलाया जा रहा है यहाँ पर काफी सारे बच्चे डांस करते हुए नजर आ रहे है सभी बच्चे एक दूसारे के काफी जादा मदद करते हुए नजर आ रहे है।

हम ये कह सकते है की यह बहुत सुंदर सी तस्वीर है यहाँ पर कही सारे लड़के लोग मिलके फोटो खिचवा रहे है लेकिन बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे है सभी अपने अपने काम में काफी व्यस्त नजर आ रहे है।

इस पिक्चर को देख कर हम यह केह सकते है की ये आदमी सेल्फी लेता हुए दिखाई दे रहा है पीछे एक जिम भी दिखाई दे रही है इस आदमी ने जिम किया है इसका पसीना भी निकल रहा है जिम की पीले रंग की बोदर काफी कमाल दिखाई दे रही है।

देख कर हम ये कह सकते है की यह एक बैंक की तस्वीर है इस बैंक में काफी सारी भीड़ भी नजर आ रहे है यहाँ पर काफी सारे बाइके भी नजर आ रही है ब्लू रंग का ये बॉर्डर काफी ज़्यादा आकर्षित हर मनमोह वाला है।

चित्र को देख कर हम यह कह सकते है की यह एक बाल काटने वाली की दुकान है जहाँ ये लड़का फोटो खिचवा रहा है इस का हेयर स्टाइल काफी अलग दिखाई दे रहा है इस ने ब्लू कलर का शर्ट पहना है लड़का काफी पतला दिखाई दे रहा है।

वो देख के हम ये कह सकते है की यह एक दुर्गा माँ की तस्वीर है दुर्गा माँ की लाल रंग की साड़ी काफी ज्यादा आकर्षित करने के लिए दिखाई दे रही है इस मेले में काफी ज्यादा भीड़ भी दिखाई दे रहे है लोग अपनी आस्था मे लुप्त हो के उठ चुके है।

उसको देख कर हम यह कह सकते है कि यह एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर एक आदमी काम करता हुआ नजर आ रहा है और--

बेचने के लिए यहाँ पे एक आदमी सब कुछ बेचता हुए भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक ग्राहक भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर को देख कर हम कह सकते है कि यह एक बहुत सुन्दर सी पिक्चर है सभी बॉडी बिल्डर अपना बॉडी दिखा रहे है नाभि बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर काफी जायद अच्छा माहोल नजर आ रहा है यह एक जीन्स पहना हुआ है।

इसको देख कर हम ये कह सकते है की यह एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर है यहाँ पर एक आदमी टोपी लगा कर और जूता पहन के खड़ा है इसका शर्ट का कलर ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है नीचे काफी फर्श भी काफी साफ सुथरी है।

ये देख कर हम ये कह सकते है की यह एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर है यहाँ पे कई सारी लाइटिंग भी की गई है यहाँ पर कई सारे आदमी लोग सब अपने अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त नजर आ रहे है और रात भी हो चुकी है।